घर है जो काफी सुंदर और काफी अच्छे बनाया गया ये घर।

यह एक जिम सेंटर है जहाँ सब कोई जिम करने के लिए आए हुए है लोग --

और बहुत ही फेमस ये --